जिसमें नेट का उपयोग करते है और यहाँ पर पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे है और तालाब बहुत खूबसूरत दिख रहा है और इसके ऊपर बादल भी बहुत सुंदर है।

यह कपड़ा दुकान है और इसमें रंगबिरंगी साड़ी दिखाई दे रही --

स्वीट्स मतलब यहां पर भोजन बनाया जाता है और भोजन खाने के लिए व्यक्ति जाते हैं और यहां पर एक गाड़ी दिखाई दे रहा है साथ में टेबल है कुर्सी है ग्लास है जग भी है ।

नौ दस भी लिखा गया है और ये टो पूरा टाइल्स का रूम है और सब भी बहुत सुन्दर है।